और इस साइड में भी वृक्ष लगा हुआ है।

ये मछली हैजो खाने मे भी इसका प्रयोग किए जाते हैं ।

ये देखिये दो आदमी है।

ये ये मुस्लिम के लिए बहुत ही मान्यता रखता है और मानिए तो ये बहुत ही उ सब के लिए महत्वपूर्ण होता है।

मतलब बेंच भी है बेंच टेबल भी लगे हुए हैं। अ देखिये लाइट्स भी कितनी है।